यह बहोत सा काउंटर है जिसका कलर सफेद है उसमें दो कुर्सी रखी है जो काली कलर की है।

ए_टी_एम के बराबर में दुकान है दुकान का कलर सफेद है।

ये बहुत सारी खिड़की है जो लोहे की है।

ये काउंटर है काउंटर का ऊपर कंप्यूटर रखा है काउंटर का कलर सफेद है।

इसके आस पास हरे भरे पेड़ खड़े हुए हैं।

उसके छत सफेद हैं छत में पंखा है।

इसके बाहर एक बोर्ड है बोर्ड का कलर ग्रे सफेद है।

मैधान में कई सारे पेड़ खड़े हैं उसमें खजूर के पेड़ है।